सामने में चार ठो इंसान हैं।

आसमान भी है जोकि नीला कलर का है।

सामने में एक रस्ता है।

सामने में एक इंसान के हाथ में बैग भी पकड़ के हैं।

सामने में बैठने के लिए बहोत सारा चेयर सब भी हैं।

बहुत सारा टेबल भी रखा हुआ है और बैठने के लिए भी बहुत सारा चेयर भी रखा हुआ है।

पीछे में बड़ा बड़ा पेड़ सब भी है।

ये फोटो में मुझे एक घर दिख रही है जो कि बैंबू से बना हुआ है।

यह फोटो में मुझे एक बड़ा सा समुंदर दिख रही है।

ये रूम में खिड़कियां सब भी हैं।

सामने में बहुत ज्यादा पैडा सब भी हैं जो कि रेड ब्लू व्हाइट कलर सबके हैं।

सामने में पानी भी है।

सामने में एक गाड़ी भी है जो की ब्लैक कलर की है।

ये बिल्डिंग में बहुत सारा दरवाजा सब भी है।

साइड में बहुत सारा पर पड़े पौधे सब भी लगा के हैं।

ये ताजमहल में बहुत सारा खिड़कियां सब भी है।

सामने में बड़ा सा टेबल भी है।

गेट के बाहर में एक बाइसिकल भी है।